कुर्सी और टेबल दिखाई दे रहा है।

चार खिड़की और एक दरवाजा नजर आ रहा है।

शीशे के दरवाजे लगाए गए हैं।

यह एक न्यूक्लियस मॉल के बाहर का दृश्य है।

क्या एक मस्जिद के अंदर का दृश्य है।

पीछे में काफी सारे बड़े बड़े मैदान नजर आ रहे हैं।

काफी सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

इसमें लोहे के काफी सारे रॉड लगाए गए हैं और उन्हें सिल्वर कलर किया गया है।

पानी का कलर पीला है।

पीछे में एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है जिसने ब्लू कलर की जींस पहनी हुई है।

सभी साइकल एक लोहे के स्टैंड पे लगाया गया है।

उसके ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है।

इसमें काफी सारी खिड़कियां नजर आ रही है।

यह एक जंगल के अंदर का दृश्य है जिसमें दो बड़े-बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं।

उसके हाथ में एक घड़ी भी नजर आ रही है।

यह एक कंपनी के अंदर का दृश्य है।

एक आदमी का पुतला रखा हुआ नजर आ रहा है।

बाहर में भी कुर्सियां रखी गई हैं।

सामने में काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

पीले व्हाइट और कत्था कलर किया गया है।

सारे व्यक्ति लोग भी नजर आ रहे हैं ।

जिसमे पंडाल के अंदर काफी सारे मूर्तियां बनाए गए हैं।

उन्हें एक बड़े से टेबल पे रखा गया है।